पांच कुर्सियां है। चारो तरफ से लाइटें लाइट जल रही हैं। बिल्डिंगे बानी हुई है। मकान बने हुए दिख रहे है।

पेड़ है छोटे-छोटे पेड़ गहरे पत्ते पड़े हुए है। रास्ते कच्ची पगडंडी रास्ता बना हुआ।

और पहाड़ है। वहाँ पे पेड़ हैं। हरे भरे कुछ पानी भरा हुआ दिख रहा है। छोटी-छोटी हरी घास दिख रही है।